इस फोटो में दिन का समय है पीछे एक कार दिखाई दे रही है एक बाइक भी दिखाई दे रही है।

पीछे बर्तन भी रखे हुए हैं।